सामने में गोबर की गोल गोल सी थपड़े हुऐ है खेत में एक गाड़ी है।

एक लम्बा सा चियार का थाक बना हुआ है जो रेड कलर की चियार है ऊपर एक बक्सा लगा है आसमानी कलर का निचे बहुत सारी ईटा जमे है उसी के ऊपर ग्रीन कलर का पाइप है हल्का सा एक दिवार व्हाइट कलर का दिख रहा है।

लंबा-सा टावर खड़ा हुआ है जो कि व्हाइट कलर का है जिसके ऊपर में भी गोल-गोल व्हाइट से कुछ लगे हैं।

जिसने ग्रीन कलर का पेंट और ऑरेंज कलर का दाग है एक बेल्ट पहना है काले रंग --

रेड कलर का है बीच में भी बहुत सारे पत्थर काले-काले है साइड में कुछ गाछ ग्रीन है।

लम्बे से टावर खड़ा हुआ है जो लोहे का बना हुआ है जिनमें बहुत सारी गोल-गोल वाइट कलर की कुछ मशीन लगी हैं और लम --

जिससे पानी बह रहा हैं ऊपर मे दो ताल के गछ दिख रहे हैं ऊपर में पहाड़-सा है जो ग्रीन कलर का है साइड में एक बड़ा-सा गछ है ऊपर आसमान का कलर हल्का ब्लू और वाइट है।